इस चित्र में बहुत सारे खेत दिखाई दे रहे है।

मैदान की गंबन पेड़ पोधे की पार्किंग हो रही है ।

साइकिल दिखाई दे रही लड़की जाती हुई दिखाई दे रही --

थोडा बहुत सूर्य दिखाई दे रहा है।

घनमन छोटे- छोटे घर दिखाई दे रहे --

नीचे बहुत सारे फुल नकली पड़े हुए दूबा पड़ी हुई है घास पड़ा हुआ है पेड़ पोधा दिखाई दे रहा।

ब्लैक कलर के थ्री सीटरस लगे हुए है।

कल अलग - अलग कलरो से पुते हुए घर बिल्डिंग्स दिखाई दे --

एक पेड़ दिखाई दे रहा है घना सा।

एक आदमी चशमा लगा रहा है और हस के फोटो खिचवा रहे ।

बहुत सारे नट दिखाई दे रहा है।

कलर लगा हुआ है कुछ ल लेडीज मुंह ढकी हुई है कुछ ऐसे ही --

बीच में बहुत बड़ा फ्लावर्स है और इनको माला पहनाई गयी है।

वाइट कलरस की मुर्तियां है।

इस छेत्र में बहुत सारी--

पेड़ पौधे दिखाई देरा है।